और बहुत दो तीन-तीन तल्ला घर है ।

यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ है और बहुत ही अच्छा लग रहा है और एक व्यक्ति कुर्सी पे बैठा हुआ है।

और पीछे भी एक ए-इ-इ अथी की तरह अच्छा ही दिख रहा है।

यह फूल के दुकान है बहुत बहुत ही अच्छा है एक वाइट कलर का है एक पी बगल में रेड कलर है।

और सब नीचे की तरह देख रही हैं और एक रास्ता भी है उधर जाने की मिस की ऑफिस --